एक आदमी है फोन पे बात कर रहा है अंदर है अंदर भी एक आदमी छोटा लड़का बैठा हुआ है चेहरे ख--

यहाँ पे हाईवे रास्ता है और यहाँ पे ट्रक हैं जो जा रहे हैं।

एक बॉक्स है कार्टून है वहाँ पे रखा हुआ है नीचे और टू व्हीलर है फोर व्हीलर है और रात का समय--

यहाँ पे स्टेज है स्टेज पे लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे एक कॉस कॉस्ट्यूम पहन के जो साड़ियाँ पहन के आई है। यहाँ पे कथक डांस के लिए और यहाँ पे लाइन से जो जा रहे हैं।

पेड़ छोटे से पौधे पड़े हैं और उसको साइड में जाली का मारे हुए हैंराउंड क्योंकि वो कोई खा ना सके--

कलर है व्हाइट कलर का कपड़ा पे और टेबल पे भी है।

यहाँ पे बुके रखे हुए हैंटेबल के बीच में और यहाँ पे है ऊपर लाइटिंग और यहाँ पे है झुंबर लगा हुआ है खूबसूरत से--

यहाँ पे गार्डन है जिसका नाम है अजंता ग्रीन नर्सरी फॉर और किड्स और प्लांट सीट लिखा हुआ है।

जो मिट्टी के बने हुए हैं जो यहाँ पे पोट खरीद पे खरीद कर भी वहाँ पे पेर सकते हैं और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ--

और यहाँ पे है जो बड़ा सा झाड़ है जो किले से भी बड़ा नज़र आ रहा है बड़े खांटे हैंऔर ग्रीन कलर का है टोटल ग्रीन है दिन का--